यह एक मदिर का दर्शय है जहा पे इ जो है मंदिर का द्रशय है यहा पर जो रात्रि का समय है।

बिजली का सारा सामान दिखाई दे रहा है बल्ब ट्यूबलाइट यहा पर सारे इलेक्ट्रिकल उपकरण यहाँ मौजूद हैं इस शॉप में मिलते हैं।

यह एक बहुत बड़ी नदी का फोटो हैं यह इसमें बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी नदी हैं जिसमे बहुत सारा पानी हैं।

और पानी के साइड में लाल रंग की मिटटी के मिटटी जेसे पत्थर हैं और पथरो के पास में पेड़ पोधे लगे हुए हैं।

यहा एक बहुत बड़ा तालाब का दृश्य है और दृश्य में बहुत सारी बोटिन्ग दिख रही है।

और आसपास में गंदगी भी दिख रही है और बहुत सारे बोटे भी दिख रही है और जो तालाब में उतरी उतारी गई है।

इंसान दिखाई नहीं दे रहा है बहुत सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे नदी है और तालाब है जो जगल में के आस पास में है।